उछाल मारते हुए उसमें कूदने की कोशिश कर रहा है।

विभीन्न प्रकार के बच्चे बूढ़े लोग आ कर इस पंडाल --

इस दृश्य में जो भी इंस्टूमेंट दिखाई दे रहे हैं वो एक जिम की है।

यह दृश्य किसी एक छोटे से पार्क का है।

जोकि एक कैंटीन के समान लग रहे --